कमरे में एक दरवाजा भी है।

लोग नजर आ रहे हैं जिसमें दो लड़कियाँ और कुछ लड़के नजर आ रहे हैं।

एक बल्ब भी लगा हुआ नजर--

इस तस्वीर में दो लोग नजर आ रहे हैं जो कहीं जाते हुए दिख रहे है।

और कहीं दुकानें नजर आ रही है।

जहां एक व्यक्ति बाहर की ओर जाता दिख रहा है।

लिखा हुआ दिख रहा है।

पुलिस की वर्दी में भी नजर आ रहे हैं।

एक सफेद रंग का दीवार दिख रहा है उस पे भारतीय तिरंगा नजर--

एक टेबल नजर आ रहा है जिस पर एक कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस रखा हुआ दिख रहा है।

और यह जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं यह तस्वीर एक कमरे के अंदर--

इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां बनाई हुई है।

कुछ एसी का बाहरी हिस्सा भी--

का फर्श भी नजर आ रहा है दीवार पर कुछ पंखे लगे हुए दिख रहे हैं।

ना कुछ सामान रखा हुआ है।

एक लड़के का तस्वीर नजर आ रहा है।

शीशे का एक गेट नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक कमरे की है जहां पर कुछ बेड लगे हुए दिख रहे हैं।

और भी कई सामान इधर-उधर पड़े हुए हैं।

ठीक पीछे बहुत सारा पेड़-पौधा नजर आ रहा है।

एक पीली और सफेद कलर की मकान भी नजर आ रही है।

थ्री ओ लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे छोटे-छोटे गमलों में कुछ पौधे लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में दीवार पर--

कुछ चित्र बनाए हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ--

कुछ गाड़ियां भी उसके बाहर खड़ी हैं।

उसके शीशे में एक चार पहिए वाहन भी नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

जो काले रंग का चश्मा पहने हुए हैं।

उसके पीछे बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

बहुत सारी लाइटें जलती हुई दिख रही है।

उसके ठीक बाहर गाड़ियां नजर गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है।

उस गड्ढे में पानी भरा दिख रहा है।

सड़क के अगल-बगल में मकानें दिख रही है।

और भी मकानें पीछे की ओर--

पेड़ भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में कुछ कुर्सियां--

जिम कर रहा है और बहुत सारी महिलाएं--

एक ए_सी भी दीवार पर लगा हुआ दिख रहा है।

दीवार पर कुछ फोल्डर्स भी दिख रहे हैं।

एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

भैया बहन भी खड़ी नजर आ रही है।

उसके अगल-बगल ढेर सारा पेड़-पौधा भी नजर आ रहा है जो हरे भरे--

जिसके बाहर में बहुत सारे मकान भी दिख रहे हैं।

इस मैदान में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस मैदान में हरी-भरी--

उसके बगल वाली बोरी में भी मिर्ची है।

रंग का भी कुछ दिख रहा है।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

एक स्टेज नजर आ रहा है।

में अंधेरा दिख रहा है।

एक सड़क के अगल-बगल में बना हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ मकान भी दिख रहा है।

हैं कुछ बैठे भी हैं।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

उसके ठीक पीछे बहुत सारा पेड़ पौधा--

बहुत सारे लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं।

सड़क पे लोग खड़े हैं।

जहां पर जिम की वस्तुएं रखी हुई है।

शीशे के उस पार बहुत गाड़ियां नजर आ रही है।

जमीन पर रंगोली बना रही हैं।

पहाड़ का आकृति बनाया हुआ है जिस पे से पानी गिर रहा--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

जिम की वस्तुएं रखी हुई है एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ भी नजर आ रहा है।

का बोर्ड दिख रहा है।

एक लड़की नजर आ रही है जो सीढ़ियों पर खड़ी है।

सीढ़ियां के बगल में गमलों में हरे भरे पौधे लगाए हुए हैं।

ये तस्वीर किसी जिम की है जहां पर बहुत सारा जिम का वस्तुवा है।

कुछ लाइटें भी जल रही है शीशे दिख रहे हैं कुछ पोस्टर भी लगाए हुए हैं।

जिसके किनारे-किनारे बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

सड़क के बगल में कुछ बड़ी-बड़ी इमारतें भी नजर आ रही है।

इमारतों का रंग सफेद नजर आ रहा है।